बहुत सारा मैदान दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर बहुत सारे इंसान भी दिखाई दे रहे है जी हा पर बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है मुझे यह पर बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।